जोकि कुछ पाते कर रहे हैं और बोहोत सारे तराजू बी रखे हुए हैं।

पीछे की ओर एक बिल्डिंग है जोकि सफेद रंग की है।

और एक आदमी हुई खड़ा हुआ है। जिसने मास्क लगा रखा है और लाल रंग की टी शर्ट पेहन रखी है।

यह एक पोस्टर है जोकि एस.पी.एस. इंस्टिट्यूट ऑफ कोचिंग का है।

यह एक दुकान है जोकि सिटी सेंट्रल सेलून है गोपालगंज ।

एण्ड बाहर की ओर कुछ कुर्सिया पड़ी हुई हैंऔर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है और एक अंदर व्यक्ति खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

जो कि बेठी हुई है ओर खड़ी हुई है। पास में एक पुरुष भी है जो कि काले रंग के बेग को खोल रहे है पीछे की ओर बोहोत सारे फूल लगे हुए हैं जो कि बोहोत ही सुंदर है।

बहोत सारे लोग हैं जिसमें से कुछ लोग कार की रिपेरींग कर हैं। कुछ लोग उसको देख रहे हैं जिसमें से --

यहाँ पर बहोत सारे बैनर लगाए गए है जिसमे से एक होटल गेलेक्सी टावर का है। एक ब्रह्माश का है। एक माचो का है। नीचे की ओर --